और पीछे को कुछ घर भी दिख रहे हैं स लाइटों के नीचे--

पीछे दीवार पर भी भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है।

यहां पर काफी बड़ी एक बस खड़ी हुई है जिस पर कि टू टू ए_सी --

यहां पर काफी सारी भीड़ नजर आ रही है काफी सारे ऑटो खड़े हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा हॉल सा है। यहां पर बहुत सारे लाइट लगी हुई है ऊपर अच्छे से डिजाइन बना हुआ है।

ये एक शॉप है शॉप में काफी सारे कट्टे रखे हुए हैं जिसमें नीचे की और सामान रखे हुए पीछे से दो पेटी रखीं हैं।

वो पोस्टर लगे हुए हैं जिसपे कि एक पोस्टर पे चैतन्या डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है।

और सामने की अ तर तरफ तक्षक अस्पताल एवं जच्चा बच्चा केंद्र भी लिखा हुआ है बराबर में--

सामने एक कुलर रखा हुआ है एक दरवाजा जा रहा है।

एक कागज रखा हुआ एक रुमाल एक चश्मा एक बड़ा सा मग और एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है पीछे से रेड कलर की ऑरेंज मिक्स --

ये एक मिठाई की दुकान है यहां पर श्री बालाजी--

एक अम लड़का बैठा हुआ हैं और दो लड़के ऊपर की साइड को ग्रिल पकड़ के खड़े हुए हैं जोकि ऊपर नजर आ रहें हैं।

यहां पर काफी अच्छी ऑरेंज और लाइट पिंक कलर की सजावट हो रखी है सामने से रेड और वाइट कलर की भी सजावट हो रखी है।

अं कुछ शीशे से दिखाई दे रहे हैं पिछे से कुछ खंभे नजर आ रहे हैं।